यहाँ पर कुछ बड़ा पहाड़ है गा। आ- थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ऊपर बड़ा सा आसमान है। उसकी रोशनी है और नीचे की तरफ यहाँ खेत है। हरे भरे घास--

उनसे बने हुए है बर्तन उसी से हुए है ये इसी का मॉल है।

इसमे एक आदमी बना हुआ है। इसकी बॉडी हेंगी। ये यहा पर थोडे थोडे दूर पर मिरर हेंगे। बंडल्स हेंगे लेट के ऊपर नीचे करने वाला टंगनेवाला हर एक चीज हेंगी। ये यहा पर दो लोग हेंगे जो जिम कर रहे है।

और यहा पर कुछ चैअर रखी हुई है टेबल रखी है सोफ़े है बहुत सारी चीज रखी है।

यहाँ पर एक रूम हैगा रूम मे काफी लकड़ी की घड़ी रखी हुई हेगी इसके ऊपर घडी लगी है बीच मे घंटा लगा है उसका और उसमे डिजाइन बनी हुई है लकड़ी मे।

जिस मे बच्चे बैठते है ये सारी लकड़ी की बनी हुई है और इसमे स्टैन्ड लगा है इसमे मैरून कलर के कर्टन डले हुए है खिड़कियों पर।